जो की सिल्वर कलर की है एक मुझे टेबल दिख रही है जो की रेड कलर की है इसमें एक लेडी खड़ी हुई है जिसने मुंह बांधा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे बहोत सारी बसेज दिखाई दे रही हैं। आस-पास मुझे कुछ लोग भी दिखायी दे रहे हैं। सामने मुझे एक बाइक खड़ी हुई --

नीचे मुझे फूल उड़ते हुए दिख रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पंप में मुझे काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक ट्रक भी दिख रहा है। एक --

इसमें मुझे साइड में रखा एक फ्रिज भी दिख रहा है जो कि रेड कलर का है। आगे मुझे काउंटर दिख रहा है। इसमें एक कुछ बनिया पड़ी हुई है।

इस पिक्चर में मुझे झूले दिखाई दे रहे हैं। यह पिक्चर किसी मेले का दिख रहा हैं। इसमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस पिक्चर में मुझे कुछ पेड़ दिखाए दे रहे हैं जो कि ग्रीन कलर के हैं। पेड़ों के नीचे व्हाइट कलर का पैन्ट किया गया हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक बाइक दिखाई दे रही है। यहाँ एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट के बाहर कुछ शॉवर --

लगे हुए हैं जिनसे पानी निकल रहा हैं। इसमें मुझे गमले भी दिखाई दे रहे हैं जिनमें छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं। सामने एक आदमी दिख रहा हैं।

जो कि लाइट ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं। सामने की तरफ मुझे कुछ पानी दिख रहा है और प पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और ब्लू कलर का जीन्स पहना है। व्हाइट कलर के शूज पहने है। पीछे के तरफ मुझे एक्सरसाइज की मशीनें दिखाई दे रही हैं और ब्लू पर्दा दिख रहा है।